यहाँ बहुत से घर दिखाई दे रहे है यह एक शहर है।

यहाँ एक तिरंगा नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहे है दो बच्चे नजर आ रहे है जमींन नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहे है बहुत ही से पेड़ नजर आ रहे है।

यहाँ बहुत ज्यादा डी के नजर आ रही है और--

यहा सामने मे एक साइकिल नजर आ रहा है और बहुत से लोक नजर आ रहे है बहुत से घर नजर आ रहे हैं आसमान भी नजर आ रहे हैं पेड़ भी नजर आ रहे हैं जमींन नजर आ रहा है जमींन मे घास नजर आ रही है।